लगी हुई हैं। दो लाइटनिंग है। एक आदमी काला शर्ट पैंट पहने घूम रहा है।

यह चित्र चर्च ऑफ क्रिश्ट का है। जिसपे बोर्ड लगा हुआ है।

चित्र किसी कंपनी का लग रहा है जोकि बड़ी कंपनी है जिसमे --